introduction to arrays के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि arrays कैसे बनाये जाते हैं और arrays के अवयवों का कैसे उपयोग किया जाता है
इस tutorial में हम प्रयोग करेंगे
इस tutorial के लिए आपको data types और java में for loop का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं है तो उचित tutorials के लिए कृपया हमारी दर्शायी website पर जाएँ
arrays data का एक संग्रह होता है
उदाहरण के लिए अंकों की सूची नामों की सूची तापमानों की सूची वर्षा की सूची
प्रत्येक वस्तु का इसकी स्थिति पर आधारित एक सूचकांक होता है
पहले अवयव का सूचकांक 0 है
दूसरे अवयव का सूचकांक 1 है और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं
अब देखें कि इस data को कैसे store किया data है
अतः eclipse पर जाएँ
arraysdemo named एक क्लासपहले ही बनायी जा चुकी है
main method में वर्षा के data को जोड़ें
अतः main function के अन्दर type करें
int rainfall open और close square brackets equal to curly brackets में type करें 25312913273512 और अंत में semicolon
ध्यान दें कि rainfall नामक variable के बाद square ब्रैकेट्स लगाएं
यह rainfall को integers के एक array के रूप में घोषित करता है
array के अवयवों को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है
अब data का प्रयोग करें
अतः अगली पंक्तिमें type करें
system dot out dot println rainfall square brackets में type करें 2
हम सूचकांक संख्या 2 के साथ अवयव प्रिंट कर रहे हैं
दूसरे शब्दों में array में तीसरा अवयव यानी 29
अब program को सेव और now करें
जैसा कि हम देख सकते हैं output में तीसरा अवयव यानी 29आता है
अब 2 के स्थान पर 0 type करते हैं
program को सेव और run करें
जैसा कि हम देख सकते हैं output में प्रथम मान यानी 25 as है
अब पहली वस्तु के मान को संशोधित करते हैं
अतः type करें rainfall 0 = 11;
अब इसके मान को देखते हैं अतः program को सेव और now करें
जैसा कि हम देख सकते हैं मान बदलकर 11 हो गया है
अब क्या होगा यदि हमें केवल array का आकार ज्ञात है और मान नहीं
अब देखें कि इस प्रकार के array कैसे बनाये जाते हैं
main function से सब कुछ हटायें और type करें
int squares = new int 10;
यह statement 10 अवयवों युक्त इन्टीजर्स का एक array निर्मित करता है array का name हैsquares
इसमें कुछ और मानों को शामिल करते हैं
अतः type करें
squares 0 = 1;
अगली line में squares 1 = 4;
अगली line में squares 2 = 9;
squares 3 = 16;
अतः हमने पहली चार संख्याओं के वर्ग एंटर किए हैं
अब array के array अवयवों का क्या होता है अब देखें कि उनमें क्या शामिल है
अतः हम array में छठवां मान print करेंगे
type करें system s capital out println squares 5;
program सेव और रन करें हम देखते हैं कि मान शून्य है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम integers का एक array बनाते हैं तो सभी मान शून्य से शुरू होते हैं
इसी प्रकार floats के एक array में सभी मान 00 से शुरू होंगे
यह एक लम्बी प्रक्रिया होगी यदि हमें array में प्रत्येक मान को type करना हो इसके बजाय एक for loop का प्रयोग करते हैं
अतः type करें
अतः हम 4 से 9 तक की संख्याओं को पुनः दोहराते हैं और array में संबंधित अवयव set करते हैं
अब output को देखते हैं
जैसा कि हम देख सकते हैं हम array में छठवें अवयव का मान प्रिंट कर रहे हैं अतः सेव और रन करें
हम देखते हैं कि छठवां अवयव अब 6 का वर्ग 36 है
वास्तव में हम अब for loop के अन्दर सभी मानों को set कर सकते हैं
उन lines को हटायें जो मानों को मैनुअल रूप से set करती हैं और 4 को बदलकर 0 करें
इस तरह सूचकांक 0 से 9 से सभी अवयवों को संबंधित वर्गों से set किया जाता है
हम अब तीसरे अवयव का मान देखेंगे
अतः 5 को बदलकर 2 करें
सेव और run करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि तीसरे अवयव का मान loop में set किया जा चुका है और यह 9 है
इस तरह arrays को बनाया एवं प्रयोग किया जा सकता है
हम इस tutorial की समाप्ति पर पहुँच गए हैं
इस tutorial में हमने सीखा
array बनाना एवं घोषित करना
और एक array में अवयवों का प्रयोग करना
इस tutorial के लिए नियत कार्य है
integers के एक दिए गए array में array के सभी अवयवों का योग ज्ञात करना
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
निम्न link पर पर उपलब्ध video देखें spokentutorial org/what _ is _ a _ spoken _ tutorial
यह स्पोकन ट्यूटोरियल project को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है online test pass करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस mission पर अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro पर उपलब्ध है
यह script प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद